यहां मुझे बहोत सारी सजावट दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे एक पंखा दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे एक गैरेज दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे एक स्टेज दिखाई दे रहां हैं।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

इस तसवीर में मुझे एक नदी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे कुछ घर दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर मे मुझे एक रोड दिखाई दे रही है।